ये एक चर्च दिखाई दे रा है जो वाइट कलर का है चर्च के पास एक अल्बेस्टर लगा हुआ है छत पर--

ऊपर से पानी दिखाई दे रहा जो नीचे गिर रहा बहुत सारे लोग दिखाई दे रहा--

फोन पे का लटका हुआ दिखाई दे रहा है क्यू_आर कोड दिखाई दे रहा है नीचे टेबल दिखाई दे रहा फर्श दिखाई दे रहा है दरवाजा दिखाई दे रहा--

यहां एक रूम दिखाई दे रहा है जो बहुत बड़ा है सामने में फोटो फ्रेम दिखाई दे रहा है जो दिवाल में लगा हुआ है ए_सी दिखाई दे रहा व्हाइट कलर का है।

एक वाइट कलर का कार दिखाई दे रहा दरवाजा दिखाई दे रहा एक पेड़ दिखाई दे रहा--

सामने में एक घर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर पानी का टंकी दिखाई दे रहा आसमान दिखाई दे रहा है लाईन के खंभे दिखाई दे रहे --

नीचे दुकान में बहोत सारी कुरकुरे चिप्स का पैकेट दिखाई दे रहे हैं बहोत सब बड़े बड़े पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।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

एक ब्लू कलर का पोल दिखाई दे रहा है जिसमें पानी के पाइप दिखाई दे रहे हैं एक ट्रेन दिखाई दे रहा है।

धान के छोटे छोटे पत्ते दिखाई दे रहे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रे हैं पहाड़ दिखाई दे रहा है जंगल दिखाई दे रहा--

यहां पे मुझे सामने में एक बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन दिखाई दे रहा हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ पुलिस स्टेशन ।

यहां पे मुझे बहुत बड़ा दुकान दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे सामान है बच्चे लोग के खिलौने दिखाई दे रहें--